और दो आदमी हैं यह तीन आदमी है नारियल का पेड़ है बादल है यहां बहुत सारे पेड़ हैं नीचे टाइल्स लगा है।

यह पूल है बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है लगा हैं।

उधर पेड़ है पौधे है